साफ दिखाई दे रही है जो की ग्रीन कलर से पेटेड है सेकड बिल्डिग हमे सही दिखाई दे रही है बट उसका गेट नही है उसमे सिर्फ विडो विडो दिख रहा है हमे और जिसके दो ब्राउन कलर से पिल--

और उसके ऊपर ठीक ऊपर एक बोर्ड लागा हुआ है जो की उस शॉप को डिस्क्राइब करता है की वो किस चीज की शॉप है लिखा हुआ है उसको बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के अंदर और जो शॉप का जो नीचे अंदर इंटरनल गेट है।

यहाँ हमे एक शॉप दिखाई दे रही है जो की हाफ ग्लास से और प्लास्टिक से उसका गेट बना हुआ है प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल है उसका--

और उसमें अ पानी के अंदर एक पर्सन है एक इंसान है जो की तैर रहा है।

यहाँ हमे एक सुन सान सा एरिया दिखाई दे रहा हैजो की अभी क्लोज्ड ऐसा लग रहा हैकी बंद है और शटर लगे हुए है एक तरफ बिल्डिंग में और दूसरी तरफएक रोड गली रोड सा जा रहा है कुछ --

खाली रोड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक जी जीप और एक बाइक है।

एक बिल्डिंग है बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में दूसरी बिल्डिंग है बिल्कुल विलेज स्टाइल में और रोड के ऊपर दो बी बेरिएर टाइप लगे हुए है जो पुलिस वालों की बैरियर्स होते है वो उसपे एक रोड के ऊपर में एक आदमी भी चल रहा हैं।

और वहाँ पे फ्लैग दिखाई दे रही है अभी फ्लैग एक साथ मे कुछ प्लांट्स पेड़ पौधों को बड़े अच्छे से डिस्कराइब कर हुआ है।

हम देख रहे है एक आ शॉप जि जिसका गेट ग्लास का है और उसमे कर्टन लगा हुआ है इसलिए इसमे आर पार नही देख सकते और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ उसमें--

हमें बिल्कुल रोड दिखाई दे रहा और रोड एकदम साफ और क्लेयर एकदम खुला - खुला और रोड के साइड में बिल्डिंग्स है जो की क्रीम और यलो कलर और व्हाइट कलर से मिलकर बनी हुई है।

और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग और बहुत प्लेन बिल्डिंग है बिल्कुल क्लेयर और कुछ विंडोज है विंडोज के ऊपर सेट्स लगी हुई है।